ये क्रिस्चियन स्कूल है जिसमें बच्चों को हैंड क्राफ्ट से कुछ बनाया जाये सिखाया जा रहा है और टीचर आईं हैं और बच्चों को कुछ सीखा रहीं हैं और ये लगता है की रेसिडेंटिअल स्कूल है क्योकि बच्चों का पहनावा अलग-अलग है।

यंग है पूरा टीम ।

कार पार्किंग में कोई रेलवे स्टेशन यहाँ कार से लोग आए हैं छोड़ने के लिए। काफी अच्छा से सेटिंग किया हुआ है।

सुबह में इन लोग का विवाह का कार्यक्रम होगा।

जिला है और ये पूर्णियाँ जिला बिहार का जिला है। बहुत पुराना जिला है और यहाँ बहुत लोग रहते हैं।

और ये काफी अच्छा शॉप हमको लगता है। काफी इसका नाम है तभी ये गूगल में आया है और काफी अ अच्छा दूकान है ये।